इस चित्र के अंदर एक मैदान नजर आ रहा है साथही मे एक शेड भी नजर आ रहा है शेड के नीचे खड़े हुए लोग बाते करते हुए दिख रहे है साथही मे मैदान मे भागते हुए कुछ लोग भी दिख रहे है।

सामने एक बड़ा सा दरवाजा भी नजर आ रहा हैं ईमारत के अंदर बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ भी नजर आ रही हैं।

इस चित्र के अंदर दो बड़ी बड़ी चट्टाने नजर आ रहे है इस के साथ ही कुछ पौधे और घास भी लगे हुए है सामने एक बड़ा सा तालाब भी नजर आ रहा है।

इस चित्र के अंदर एक व्यक्ति नजर आ रहा हैं जो के कपड़ो को इस्त्री कर रहा हैं सामने एक स्विच बोर्ड भी नजर आ रहा हैं।

इस चित्र के अंदर एक पहाड़ नजर आ रहा हैं पहाड़ के सामने छोटी-छोटी चट्टानें भी नजर आ रहीं हैं सामने एक खंबा भी दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक महिला भी बैठी हुई दिख रही है चित्र के अंदर एक व्यक्ति अपनी बैटी के साथ खड़ा हुआ है।

साथ ही मे कुछ बैनर भी नजर आ रहे है बाहर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।